इस पिक्चर में एक इंटरस गेट दिख पा रही हूँ जो कि ऑरेंज और येल्लो कलर की इसमें क्रिस क्रॉस किये हुए हैं और में इसके अगल बगल में काफ़ी सारे पेड़ पौधे को दिख पा रही हूँ।

इस पिक्चर में मैं हर तरह की इमारतें देख पा रही हूं बड़ी छोटी हर तरीके के और मैं इमारत के बगल में एक पेड़ देख पा रही हूं। जिस पेड़ के पास में मुझे हरे रंग के पानी लगे हुए मैदान नजर आ रहे हैं और मैं देख पा रही हूं।